यह एक रूम का दृश्य है।

और डब्बे का कलर रेड एवं व्हाइट नजर आ रहा है।

इसमें लिखा गया है अजीज ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क और इस दुकान में गाड़ी भी लगाए गए हैं।

और डोलो का कलर पिंक रेड व्हाइट ग्रीन ब्लैक आसमानी बेगनी और बहुत तरह तरह के खिलौने भी रखे हुए हैं।

एवं आसपास में चार पांच घर भी नजर आ रहे हैं तथा एक पोल भी दिख रहा है जिससे लाइने पास हो रही है।

जो ब्लैक कुर्ता भी पहना हुआ है।

तथा आदमी स्वेटर भी पहना हुआ है स्वेटर का कलर ब्लैक नजर आ रहा है एवंम यहां पे बहुत सारे पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

तथा आदमियों का मुंह कलर किए गए हैं एवं इसके अगल बगल में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

तथा यहां पे बिल्डिंग का कलर ग्रे कलर नजर आ रहा है और यहां पे जाने वाले रास्ते भी बनाए गए हैं एवं यहाँ पे बहुत सारे खिड़कियां भी नजर आ रहे हैं।

घर भी नजर आ रहा है जिसका कलर वाइट एवं ऑरेंज नजर आ रहा है।

और दो आदमी हाथ में कपड़े पकड़े हुए हैं।

सामने में एक पोस्टर भी लगाया हुआ है।

यह एक झील का दृश्य है जहां पे इसके सामने में एक पहाड़ भी नजर आ रहा है।

और इसके पीछे टाइल्स भी लगाए गए हैं जिसका कलर वाइट नजर आ रहा है और इसके बगल में एक और कलर का टाइल्स लगाया गया है।

तथा सब आदमी का मुंह ब्लर किया गया है एवं यहां पे बहुत सारे बैलून भी नजर आ रहे हैं।

जिसका पोस्टर महिला का नजर आ रहा है।